पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

समुद्र में नाव है जो रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ कुछ लोग है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है साइकिल है।

यहाँ मुर्गी को दाना देने के लिए बर्तन रखाया हुआ है यहाँ का जमीन कट-कट गया है और बंजर है।

ये एक स्टेज है ऐसे लग रहा है यहाँ पे एक लड़की है जो डांस कर रही है और--

ये एक स्टेडिम है यहाँ पे--

यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है इसके बिम्ब-बिम्ब को बस ढलाई किए है फिर अभी दीवार नहीं उटा है यहाँ एक पानी का टंकी बना हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में एक आदमी है जो पेट्रोल डाल रहा है गाड़ी पे डीजल डाल रहा है यहाँ स्कूटीया दिखई दे रही है।

यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है ये शाम का समय है डक सूरज ढल चुका है।